देखो दोस्तों हमको ये जो कॉलेज दिख रहा है ये आई.टी.एल. इंडस्ट्रियल इंस्टिट्यूट कॉलेज देख --

देखो हमको ये जो नजर आ रहा है ये हमको बिल्डिंग नजर आ रही है देख सकती है एक जो बिल्डिंग है ये निचे एक गेट लगा हुआ है जिसमें लौक --

कि सेन्टिंग को लगाया गया है जो हमको दिख रहा है आप देख सकते है की देखो यहाँ पे छत ढला हुआ है जिसमे ये खम्भे वगेरा सेन्टिंग को लगाया हुआ है सपोर्ट --

देखो हमको ये एक ग्राउंड दिख रहा है जहां पे देखो कई सारे पेड़ वेर लगे हुए है देखो हरे भरे पेड़-पौधे और आप देख --